यह सिधू कानू मुर्मू विश्व विद्यालय दूमका स्कूल है.

सामने बहुत सारे पिलर है पिलर में से जड़ दिख रहे हैं.

यह शिब मंदिर हे सामने चार गुम्बज हे.

सी_सी_टी_वी कैमरा भी है तीन ए_सी भी है.

पीला डब्बा मे ब्लू डब्बा मे--

सामने एक आदमी खड़ा है.

यह बैंक है जिसमें से एस_बी_आई लिखा हुआ है.

यह योगा सेंटर हे यह रूम में दो पिलर है व्हाइट कलर का और का --

लेडिस का सूट येलो है एक ने व्हाइट टी शर्ट पहनी है एक ने ब्लू पहनी है दो --

यह एक रूम है जिसमें दो कुर्सी लगे हुए हैं ए--

बेंच है जिसमें तीन पानी के बोतल है एक बैग है।

और नीचे इधर पूरा पाइप जैसा भी है एक छज्जा भी है.